साड़ी वा ग्रीन कलर की है कुछ गुलाबी कलर की है लेकिन सारी सा-साड़ी का जो है डिजाईन है सैम है और उसके अगल बगल में पीछे भी बहुत सारी साड़ी रखी हुई है।

इस चित्र में काफी सारे कप रखे हुवे है जो कि अलग-अलग डिजाइन के बने हुवे है इस वो सारे कप व्हाइट कलर के और कुछ कप ग्रे कलर के कुछ ब्राउन कलर के --

उसके जस्ट बगल मे एक येलो कलर का ऑटो खड़ा हुआ है उसके बैक साइड मे ईलेक्ट्रिक का पोल है और उसके बगल मे काफी सारी ग्री लगी है जो की पेड़ है।

और बहुत अच्छा दिख रहा है अगल बगल में रैक रखी हुई है जहां पे खाने की पदार्थ रखी--

चित्र में हमे एक ई कंस्ट्रक्शन साईड नजर आ रही हैजहा की जो स्लैब डालते है उस लैब का बॉटम साइड का चित्र नजर आ रहा है।

जो कि अलग-अलग उड़न के पट्टी होती है उसपे स्लैब डला है और नीचे से लोहे के और अ लकड़ी के सपोर्ट दिए है ।

आह इस चित्र मे हमे कोई ऑफिस का दृश्य नजर आ रहा है ऑफिस में काफी तरीके से फर्नीचर रखा हुआ है फर्नीचर का जो कलर है वह ब्लू कलर का है फर्नीचर में इलेक्ट्रिक के कनेक्शन भी लगी हैं।

और दीवार का कलर वाइट है वहा पर एक लाइट जला हुआ नजर आ रहा है।